यहाँ पे बहुत सारे झाड़ लगे हुए हैं और दिखने में बहुत खूबसुरत लग रहा हैं।

यह एक बड़ी सी बिल्डिंग तुमको दिख रही है हे दत्त दत्ता मै का मेडिकल कोलेज है।